यह एक कपड़े की दुकान है। यहां पे अलग अलग की कपड़े एक--

यह एक चार मंजिला घर है यह घर व्हाइट और ग्रीन कलर का है जोकि काफी सुंदर लग रहा है।

इस घर के तीनवे माले पर--

व्हाइट कलर का यहां पर एक कचरे का डब्बा भी रखा हुआ है।

रोड पर बहोत सारे बाइक पार पार्किंग में लगे हुए हैं।

ये चर्च है यहां पे बहोत सारे कुर्सी लगे हुए हैं और उनमें बहोत सारे लोग भी बैठे हुए है।

ऊपर में बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

चाय के अलावा भी कुरकुरे शैंपू तेल आदि मिलते हैं इसके सामने दो व्यक्ति--

ये मिठाई समोसा का दुकान है जिसका नाम है सीख अं--

यहां पे एक महिला स्टेज के सामने जाकर माइक पर कुछ बोल रही है।

यहां पर एक मंदिर है जो वाइट कलर की है और इसका दरवाजा रेड कलर का है इस मंदिर का नाम है।

और यहां पे बहोत सारे कुरकुरे भी टांगे हुए हैं।

बहोत सारे क्लिप लगाए गए हैं इसके सामने एक व्हाइट कलर का--

और यहां पे बाइक सभी लगी है मंदिर के पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।